इस फोटो में एक आदमी फोटो उठा रहा है।

यहां पर एक आदमी बुजुर्ग आदमी --

यहाँ पर बिस्कट आचार और कई सारे चीजें--

पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा--

इस कैबिनेट के उम तरफ दो लोग बैठे हु--

यहां पे अलग अलग साइज के पत्थर रखा गया हैं।

इस टेबल पे चार पुरुष डॉक्टर बैठे हुआ दिख रहा--

इस जिम का नाम ए_के फिटनेस है।

यह एक तेलुगु शादी का फोटो है।

यहां पे दूल्हा और दुल्हन के पास एक ब्राह्मण बैठा--

स्कूल की दिवारो मैं बहोत सारी--

मोटिवेशनल कोट्स लिखा गया हुआ है।

यहां पर एक लड़का हेडफोन लगाकर गिटार से बजा के गाना गाता हुआ दिख रहा है।

रस्सी में इनके बहुत सारे कपड़े सुखाए गए है।

ड्रेसेस के साथ यहां पे अलग-अलग तरह के ज्वेलरी भी रखा --

लाल रंग का ड्रेस पहना है।

बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए यंत्र रखे गए हैं।

यहां पे एक पानी का पाइप है।

यहां पर एक लड़का तबला बजाता हुआ दिख रहा--

यहां पे महिलाओं के कई तरह के ड्रेस रखा गया हैं।

और काले रंग का हेल्मेट रखा गया है।

उसके सामने पिंक कलर का वॉटर बॉटल है।

यहां पे कईं तरीके के पेन पेंसिल इरेज़र कैंची--

यहां पे इवोस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया--

यहां एक लैपटॉप भी रखा गया दिख रहा है टेबल के ऊपर।

इस पी ग्राउंड के बीचों बीच एक सुंदर सा मंडप सजा--

एक आदमी इस ऑफिस के नीचे खड़ा हुआ दिख रहा--

यहां पे लड़कियों के साथ लड़के भी है और--

सूर्य नमस्कार का एक पोजीशन दिखाया जा रहा है।

यहाँ पे चॉकलेट के डब्बे भी सजा के रखा--